एक बहुत पुराना महल है जिसका डिज़ाइन बेहतरीन यूनिक है और यहाँ एक आदमी है जिसने पिंक कलर की शर्ट पेहनी हुई है।